उस मैदान में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

हुआ है उस गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे और गमले दिखाई दे रहे हैं।

उस मकान के सामने कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं।

दुकान के पास एक काली टंकी दिखाई दे रही है।

दे रही है उस नदी के किनारे पर बहुत सारे मकान ओ--

उस इस्टेज के सामने एक हाथी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक फूलों की दुकान दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में एक योगा क्लास दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई--

उस चर्च की दीवार पर प्लस का निशान दिखाई दे रहा है।

उस पालकी में दो घोड़े दिखाई दे रहे हैं।

उस पालकी के ऊपर केले के पत्ते दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में एक सफेद कलर की केनोपी दिखाई दे रही है।

उस क्लास में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक स्कूल दिखाई दे रहा हैं।

उस समुद्र में नाव दिखाई दे रहीं हैं।